यहां पर एक रनिंग ट्रैक बना हुआ है जो ब्राउन कलर का है जिस पर रेड कलर के निशान बने हैं।

बाउंड्री बनी हुई है काफी कोहरा छाया हुआ--

डिजाइने लगी हुई है टेबल चेयर लगे हुए अलग अलग जगह पर ये रेस्टोरेंट है ऊपर व्हाइट लाइट लगी हुई है।

और नीचे की तरफ एक वाइट कलर की अलमारी है जिस पर बहुत सा सामान रखा हुआ है।

यहां पर एक दुकान है जो अंदर से वाइट कलर की है ।

दूसरी तरफ भी कुछ है हिंदुस्तान का पोस्टर लगा हुआ है।

पर एक मूर्ति लगी हुई है और गोल्ड डिजाइन में--

यहां पर एक बिल्डिंग है जो रेड और येलो कलर की है जिस पर ब्लू व्हाइट एक पोस्टर लगा है सामने की तरफ रेड कलर की सीढ़ियां है।

वहां भी कुछ बिल्डिंगें हैं सामने कुछ लोग गेट से अंदर जा रहे हैं ।

यहां पर एक क्लासरूम है जो वाइट और लाइट ग्रीन कलर का है सामने की तरफ काफी बड़ा वाइट बोर्ड लगा हुआ है ।

ऊपर वाइट लाइट लगी है सामने की तरफ बहुत से ब्रेंच टेबल लगे हैं ।

सामने के तरफ बहोत से टेबल चेयर लगे हुए है जिस पर वाइट और रेड कारपेट है।

यहां पर एक शॉप है जो फूलों की शॉप है जहां बहोत सारे फूल भी रखे हैं।

येलो वाइट ऑरेंज रेड पिंक ग्रीन सभी कलर के फ्लावर्स रखे हुए हैं ।

की शॉप है जिसमें अलग-अलग कंटेनरों में टोकरियों में भर भर के--

यहां पर बहुत सारे टेबल और चेयर लगे हुए हैं प्लास्टिक की चेयर पर एक व्यक्ति बैठे हैं सामने एक--

नीचे पड़ी हुई है बर्फ है यहां पर लोगों की बहुत ज्यादा--

अं जो ब्राउन कलर की अलमारी उसमें बहुत सा सामान रखा है बहुत से--

हैंगर में पैकेट्स भी टंगे हैं छोटी-छोटी यहां पर बच्चों की साइकिल भी टंगी हुई है ।

ऊपर वाइट कलर की अलमारी है जिसमें बच्चों की छोटी साइकिल और बच्चों के दूसरे खिलौने भी--

और कुछ साइकिल रखी है जो पॉलीथीन में पैक है पूरी तरह से आगे एक गेट है जिसके अंदर भी--

प्लेटफॉर्म जो है वो रेड और वाइट कलर का बना है इस पर ब्रिज भी बना हुआ है ।

और एक डॉक्टर ने ग्रीन मास्क लगाया हुआ है और एक ने ग्रीन और एक ने ब्लू --

यहां पर एक सैलून है जो लेडिस सैलून है जहां पर लेडिस के काफी ज्यादा पोस्टर लगे हैं।

यहां पर एक ग्राउंड है जो खाली है जिसके सामने की तरफ एक बिल्डिंग बनी है।

पोस्टर लगा हुआ है जो मशीने है वो येलो और ब्लैक कलर की है।

इसमें व्हाइट पिंक ब्लू येलो सभी कलर के बलून लगे हैं इन्हें बलून से डेकोरेट किया गया है।

कुछ पर लोहे के टिनसेट लगे हुए हैं साइड में--

कलर का पेंट किया गया है कुछ यहां छोटे छोटे पौधे लगे हैं रास्ता है और भी--

यहां पर बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया गया है वाइट कलर के पर्दे हैं।

फ्लावर्स लगे हैं और यहां पर रेड और ग्रीन कलर --

साइड में कुछ ग्राउंड खाली है वहां पर येलो कलर की बस खड़ी है एक--

आया हुआ है यहां पर सुबह का टाइम है इसलिए घना कोहरा है कुछ पेड़ भी नहीं दिख रहे हैं ।

और स्टेज पूरा नीचे से रेड कलर का है पीछे ब्लैक और रेड पोस्टर लगा हुआ है ।